और इनी के आजू-बाजू दो बाइक के खड़ी हुई भी नजर आ रही है।

इसी के आगे हमें एक आदमी खड़ा हुआ भी दिख रहा है जो शायद इस दुकान में किताबें खरीदने आया हुआ है।

तस्वीर मे हमे छह चिकित्सक नजर आ रहे है जो शायद एक सफल ऑपरेशन करने के बाद अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए सेल्फी लेकर अपने यादगार पर लोगों को कैमरे में कैद कर रहे हैं।

बैंक के साइड में हमेशा एक छोटा सा स्थल होता है जहां पर रखी होती है एंट्री करने की एक मशीन पैसे जमा करने की एक मशीन ।

यह भी कोई मर्दों के लिए बाल कटवाने की दुकान प्रतीत होती है और इसी के बराबर में है एक पंखे की दुकान क्योंकि वहां पर बहुत सारे फर्राटे रखे हुए है।

परंतु सबसे आगे की डेस्क पर बैठी हुई एक लड़की का सर बेंच पर रखा हुआ है।

फूलों के हार भी रखे है एक लाल रंग का कार्पेट बिछाया हुआ है और दो बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए है।

इसमे हमे बहुत सारे कटे और एक ट्रक खड़ा हुआ दिख रहा है।

इसमें सभी बच्चे स्कूल में अपनी बेंच पर बैठे हुए हैं।